ये जो तस्वीर है ये आयकर वित्त विभाग की तस्वीर है जिसके सामने हमें --

जिसके सामने हम खड़े हुए हैं और हम ये देख रहे हैं कि यह तस्वीर आयकर वित्त विभाग की है और यहां से --

यह एक जिम है जिसके अंदर कार्डियो स्ट्रैच बैंडस और साइक्लिंग और एक बोल --

वाइंस और दारू चेयर्स टेबल्स वगैरा और भी कुछ चीजें उपलब्ध है।

यह फोटो एक आइसक्रीम पार्लर की फोटो है जिसके अंदर कई तरीके की आइसक्रीम उपलब्ध है जैसे की --

गोरिला और क्लासिक बुल्ट हमें यहां देखने को मिल रही है ये काफी अच्छा और बड़ा --

बोहोत सादगी भरी है बोहोत अच्छी है।

अच्छी तरीके से उससे मेरी बॉन्डिंग है और इस घर का जो निर्वादाता है वो हमारे अंकल जी हैं।

और यहां पर कहीं तरीका कई तरीके की चीजें उपलब्ध होती हैं।

खासियत है जैसे कि हम इसको सिटी पैलेस के नाम से भी जानते--

के पास में ए वन लेडिज टेलर्स की भी दुकान है जो की एक कुशल कारीगर हैं।

मजदूरी कर रहे हैं और ये देखा जा सकता है कि यह एक कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं जहां --

इन्हें आंखों के द्वारा देख सकते हैं।

ये बिरयानी देखके मुंह में पानी आ जाता है।

जहां पर सभी तरीके की बुक्स और--

घर का एक डायनिंग एरिया है जहां जहां सामने एक टी_वी और कई डायनिंग टेबल्स रखी गई है।